यहां पर एक लायन को शेर को दिखाया गया है।

डमी को दिखाया गया है डमी जो है वो एक छोटी लड़की की है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहनी है।

ऊपर जो है वो बिजली के--

अ की है दुकान के सामने की है।

गिर चुकी है मतलब कि यह जो दुकान है वह गिर चुकी है।

एक एक ऑटो खड़ा है और तीन लोग खड़े हैं ऑटो में बैठने के--

है स्पीकर है जो कि एक माइक के सामने कुछ बोलती हुई--

पुराना किला टाइप है यह एक पर्यटन स्थल की तरह--

यूनिवर्सिटी की फोटो है। कुछ लोग अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर सजाकर रखे गए हैं।

ऊपर बोर्ड पे लिखा है प्रगति--

आगे टेबल लगा है और साथ में ही लाल रंग की और भी चेयर लगी है।

इस फोटो में एक रास्ता दिखाई दे रहे हैं जहां पर आगे--

और भी अंदर कुछ सामान अह दिखाई दे रहा है।

और उका बाहर डस्टबिन भी पड़ा है।

अंदर भी कुछ खाने का सामान जो है वो रखा हुआ है।